एक रूम है एक रूम में है ये सब चीजआ--

और इतनी बड़े बड़े झाडा भी है। एक लड़का पर खड़े हुए बिल्डिंग के ऊपर--

और यहां पर झाड़ा हैं बहुत सारे झाड़ा हैं।

और घर आए यहां पर इतनी ऊंची मंदिर दिख री और फूलों से सजेवा है ये--

और यहां पे स्कूल में कुछ फंक्शन हो रहा है।

ये एक शायद हॉस्पिटल है या स्कूल है ये एक।

और यहां बेड है और एक लड़का खड़े हुआ है वहां पर।

अंगूर है और यहां पे गाड़ियां भी है।

और बॉर्नविटा भी है बच्चों को दूध में डालके पिलाने के लिए।

झाड़ा है मुर्गी चल रही है यहां पे सड़क है यहां पर एक ये देखो मुर्गी वाइट और काली कलर की मुर्गी है झाड़ा है बहुत सारे यहां पर --

कुर्सियां है लोगा बैठे है कुर्सियों पर।

ये एक सड़क है सड़क के ऊपर बहुत सारे--

और यह चिड़ियां वगैरह भी है यहां पर--

ये एक रूम है यहां एक पलंग है बैग है।

ये देखिए यहां पर टेबल वगैरह रखे हुए एक होटल है शायद--

ये एक सड़क है और यहां गाड़ियां है लोखा है।